और ये देखिये और ये देखिये हमारे बेगूसराय इधर की ये कितना अच्छा नदी है।

देखिये यहाँ पे आइये और लेके जाईये ये बहुत अच्छी दुकान है यह दुकान में --

और ये हमारे बेगूसराए इधर के बैंक देखिए ये जो है। इसमें पैसे निकले जाते है। इसमें कितने आदमी बैठे हुए है। कितने अच्छे भीड़ लगे हुए है।

यह बस बहुत अच्छी है । इसमें बहुत पैसेंजर आते है। लोग और देखिये इसमे भाड़े भी कम लगते है। ये बस बहुत अच्छा है।

टेम्पों मोटर साइकिल चार चक्का ट्रक ट्रेक्टर आप जो भी गाड़ी पार्क कर सकते है। सब हो जायेगा देखिए ये ये बेगुसराय में बहुत अच्छा पार्किंग है। और ऐ पार्किंग में पैसे कम लगता है। और पार्किंग कर सकते है आप लोग गाड़ी को --